यह होटल में कैन्टीन भी है जहाँ कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं।

पानी बह रही है। बोहोत सारे पत्थर हैं। पहाड़ पर से पानी बह रही हैं। यह पहाड़ बोहोत ही --

एटा का है। यहाँ पर एक ट्रेक्टर भी आ रही है। यहाँ पर बहोत सारे लोग भी आये हुए हैं। एक गाये खड़ी है। यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं।

बाल कटाने ऐवम दाढ़ी बनाने के लिये नाख़ून कटाने के लिये सैलून में आते हैं। यह सैलून में लोगों कि काफी भीड़ लगी रहती है।

हॉस्पिटल में आते है यहाँ पे बहुत ही अच्छे डॉक्टर है जोकि बहुत ही अच्छे तरह से --

लोगों का इलाज करते हैं। बोहत सारे आदमी इलाज कराने के लिए आते हैं।

यह एक ग़ गैरेज है। इस गैरज में खराब गाड़ियों को ठीक किया जाता है।

यह एक गाय की खटाल है। इस खटाल में बोहोत सारी गाय बंधी हुई हैं।

सारी मशीन लदाई गयी हैं।

यहाँ पे बोहोत सारे फूल पौधे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे बोहोत सारे डी.जे. के बॉक्स खड़े हैं।

यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है।

यहाँ पे कोई क्षेत्र शीतलपुर जनपद एटा के हैं।